है यहाँ पे और ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वाइट कलर दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर की स्कूटी दिखाई दे रही वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

तो बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है यहां पे ग्रीन ब्लू और पर्पल कलर दिखाई दे रहा है और यहां पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।